ऊपर भी फूल का डिजाइन बना हुआ है जो लकड़ी का है जो ब्राउन और हल्के पीले रंग का है नीचे मार्बल है जो वाइट रंग का है पीछे खिड़की है दरवाजा है जो लकड़ी का बना हुआ है जो दिखाई दे रहा है।

मोड़ा हुआ है एक और लड़का है वो भी पैर मोड़ा हुआ है।

यहां पे छोटा सा दुकान दिख रहा है जो लिखा है राम भगत राम निवास लिखा हुआ है नीचे बजार इज्जत झज्जर लिखा हुआ है पिन कोड दिया हुआ है।

यहां पर एक कप का दुकान दिखाई दे रहा है जो बहोत से कप है जो रखी गई है।

और नीचे में एक गैलन है जो छोटा सा दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहोत सा लकड़ी की खाट बनी हुई है जो एक बाई एक दिखाई दे रही है।

के नीचे एक पक्का जिसमें हथौड़ा रखा गया है जो लोहे का दिखाई दे रहा है।

जो स्टील की है जो हल्के काले और सिल्वर कलर में दिखाई दे रही है एक आदमी है।

यहां पर एक घर दिख रहा है जहां बहुत सारी लाइटें है जो लगी हुई है और जो रेड कलर की है पर्पल कलर की है येलो कलर की है बहुत से फूल है।